यहाँ गंगा नदी है। बहुत बड़ी सी गंगा जी हैं।

यहाँ पे बड़ी-बड़ी पथरे हैं। चट्टान है और गुफा दिखयी दे रहा है उस गुफे में --

रेड चेयर्स रखे गए हैं पांच छे गो।

बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है। गेट --

गमले में पौधे लगे हुए दिखयी दे रहे है। फ्लावर्स है।

स्टेजेज हैं। बत्तियां बल्ब लगी हुई हैं।

यहाँ बहुत बड़े खेत है यहाँ पे और बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

अं और ग्रीन कलर का बुद्ध जी का मूर्ति है छोटी-छोटी बड़ी हैं।

और उनपे एक छोटा सा गोल्डेन कलर का मूर्ति एक और दिखाई दे रहा है।

एक येलो कलर का सरकने वाला बच्चों का खेलने वाला झूला --